यहाँ पर एक टीचर है जो कि अ-अ खूब सारे बहोत सारे बच्चे हैं इनके आसपास उन्हें कुछ सीखा रही हैं डांस क्लास वगेहरा लग रही है जहाँ पर एक लेडीज बैठी हुई है।

इन्हे एक कोने मे रख रखा है जो की एक मॉल की पिक्चर लग रही है यहाँ सब तरह के गोल है चोकुट्टे सभी तरह के डोर मैट हैं।

पीले कलर के फूल हैं और ये बहोत ही खूबसूरत लग रहे हैं इसके आसपास बहोत सारे पेड़ भी लगे हैं।